यह एक गार्डन का दृश्य है यहां फिसल पट्टियां हैं।

यहां एक पेपर है पेपर पर कुछ क्राफ्ट का वर्क है जो चिड़िया की डिजाइन का है।

कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है।

यह एक टोल नाके का दृश्य है।

यह एक स्कूल के आंगन का दृश्य है।